स्टेशन के ऊपर लाइटिंग का भी काम किया गया है।

यह तस्वीर एक स्विमिंग पूल की दिखाई गई है जिसके ऊपर की अन्य सारे गेम लगे हुए --

और चारों साइड नेट भी लगी हुई है और नीचे--

और बाहर ए_टी_एम के बाहर कचरा भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है और अंदर लाइटें भी जल रही है।

और कई व्यक्ति रोड पे से जा रहे हैं और कई व्यक्ति एक छपड़े के नीचे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर --

ये पिक लालगढ़ रेलवे स्टेशन का नजर आ रहा है।

यह फोटो एक पार्क की नजर आ रही है इसके अंतर्गत एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है व्यामशाला ओपन जिम ।

यह तस्वीर एक लाइब्रेरी की नजर आ रही है जो एक सरकारी लाइब्रेरी भी दिख रही--

के दोनों साइड खंभे भी लगे हुए हैं और पास में कई बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

यह तस्वीर कोई गेट या रस्ते का दिखाया गया है जिसके यू आकार का गेट भी लगा हुआ है दोनों साइड --

और साथ में चांद भी दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग के आगे कई तार भी दिखाई दे रहे हैं और सामने गेट भी दिखाई दे रहा है।